एक होटल है। होटल में एक पर्दा दिखाय जा रहा है एक पलंग दिखाय जा रहा है एक बाथरूम का गेट दिखाय जा रा है एक टेबल दिखाय जा रा है एक चा का केन दिखाय जा रहा है टी.वी. दिखाय जा रा है।